यह ऑटो में लिखा हुआ रहता है ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ यह ऑटो बैटरी वाली दस किलोमीटर तक चलती है।

ये महल हजारों साल पुराना महल हैं।

यह ए.टी.एम. में लोग पैसे उठाने के लिए आते हैं और इसके बगल में और एक दुकान --

यह हॉल में लोग इस हॉल को बुकिंग करते हैं शादी के लिए मेरिड बर्थडे के लिए एनिवर्सरी के लिए मीटिंग के लिए।

ये गाड़ी धोने का एक सौ रुपया मिलता है।